उसमें जो एक व्यक्ति मछली बेचते हुए दिखाई दे रहा है इसमें काले रंग की मछलियाँ दिखाई दे रही हैं।

एक स्कूल जिसका हाल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं हमें एक सर बच्चों को देख रहे हैजो--

और बीच में अ रोड के लिए काला पैंट है बगल में हरा है और आसपास सफेद दीवार दिखाई दे रही है।